हमे सामने एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमे लिखा हुआ है बिहार मोटर साइकिल रिपेयरिंग सेंटर एंड --

स्पेयर पार्ट्स यहाँ चार स्टॉक गाड़ियों का काम किया जाता है एवं --

सभी कुर्सियो पर सफ़ेद कलर का कपड़ा ढका हुआ है।

साइड में हमें एक चौपाइयां पहिया से रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिम की दो मशीने दिख रहीं --

और एक कमरे का गेट हमे लगा हुआ दिखाई दे रहा है एक खुला हुआ दिखाई दे रहा है |

है और हमे रोड पर दो तीन कार दिखाई दे रही है बहुत सारे खम्भे लगे हुए दिख रहे हैं |